इस चित्र के अंदर एक विद्यालय नजर आ रहा है जिसके बाहर एक बड़ा लोहे का दरवाजा बना हुआ है।

दुकान के पीछे एक बड़ी इमारत भी बनी हुई नजर आ रही है पार्क के अंदर बहुत सारे पेड़ व घास दिखाई दे रही है।

इस चित्र के अंदर एक कॉलनी नज़र आ रही है जिसके अंदर कई सारी मंज़िले दिखाई दे रही है।